यह एक एक्सरसाइज रूम है।

यह एक नाई की दुकान है।

और बहुत सारे फूल दिखाई दे रहे हैं जो की रंग मरंगी है।

यह एक गमलो की दुकान है।

और दो लड़कियां भी दिखाई दे रही है।

जिसमें मुझे बहुत सारे गुब्बारे दिख रहे हैं।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

जिस पर लीसी लग रही है और लाइट भी लग रही है।

जिसके ऊपर सामान रखा हुआ है।

और एक मास्टर भी दिखाई दे रहा है।

और कुछ कुर्सियां दिखाई दे रही है।

इसके बाहर कुछ पर्चे लग रहे हैं।

जिसके बाहर मुझे लाइट दिख रही है।

यह एक बहुत ही सुंदर रूम है।

और पंखे भी दिखाई दे रहे है।

इसमें मुझे एक डिजाइन का बेड दिख रहा है।

यह एक दुकान है जिसमें मुझे कुछ पंखे दिखाई दे रहे हैं।

और एक आदमी भी दिखाई दे रहा है।

जिसमें मुझे कुछ लड़कियां दिखाई दे रही है।

और बहुत सारी लाइट भी दिखाई दे रही है।